सड़क के किनारे काफी सारे मकान बने हुए है पेड़-पौधे लगे हुए है एक-का-एक खड़े हुए है।

कहा था कृष्णा सभी देवी देवता और कोई मूर्ति रखी हुई है एक कुर्सी पर दान पात्र रखा हुआ है सभी व्यक्ति इन्हें देख रहे हैं हनुमान जी भी रखे हुए --

ये एक मेला है जिसमें काफी बड़े-बड़े रखे हुए हैं।

एक व्यक्ति छत पर खड़ा हुआ है सामने से सड़क निकल के जा रही है और भी माकन बने हुए हैं हरी-हरी घास लगी हुई है।

एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हुआ है एक टेबल रखा हुआ है जिस पर टेलीफोन रजिस्टर इस्टेशनरी पेन लेपटॉप --